अपले स्वासासोनत्रा --

जैसे कि मैं देख सकती हूं ये लोग कहीं घूमने आए हैं।

नीला कलर का गेट लग रहा है औ नीली दिवुल पुत रही रही है।

कुछ लोटे भी रखे हैं थाली भी रखी --

एक साइकिल सा ऑटू बन रहा है।

कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे हैं।

जैसे कि मैं देख सकती हूं--

यहां पर दुकान है।

एक बनियान टंगी है एक इनर टंगी है और बहुत सारी जालीप टंगी हैं।

जैसे कि मैं देख सकती हूं मुझे एक बहोत बड़ा घर नजर आ रहा है।

आसमान भी दिख रहा है।

वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

जैसे कि मैं देख सकती हूं यहां पर बहुत बड़ा झूला है।

उस पे कुछ बच्चे लटूम रहे हैं।

बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग अभी बन रही है।

इसका बीच में पट्टा लाल कलर का अलग-वलग के कपड़े हैं वो गोल्डन कलर के --